इस फोटो में कुछ रस्सियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

ये एक टेबल पर रखा गया है और इसमें पीछे कुछ झाड़ू भी रखी हुई है।

यह फोटो किसी यस_के ज्वैलर्स की शॉप का फोटो देखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये कुछ कुर्सियां और टेबल रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

ऐ फोटो एक जिम का फोटो दिखाई दे रहा है।

ह फोटो किसी कपड़े की शॉप का फोटो देखाई दे रहा है जिसमें कांच की अलमारियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

ऐ फोटो एक जे_एम_के के टोएटा कंपनी का फोटो दिखाई दे रहा है।

इनमे कुछ पत्थर भी चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं और फब्बारा भी चलता दिखाई दे रहा--

पास बहोत से पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

अलमारी में बोहोत सारे सेट और पैंट के कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें लोहे की रेलिंग भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कोई भगवान की मूर्तियां भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें लड़कियां प्रोग्राम करती हुई दिखाई दे रही हैं।

जिसमें वह एक लड़के के बाल काटता हुआ दिखाई दे रहा है।

ये फोटो किसी नदी के किनारे का फोटो दिखाई दे रहा है।

और उसके आस पास कुछ कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

में एक फोटो कॉपी की दुकान भी दिखाई दे रही है।